जैसा की हम दे सकते है सामने बहुत सुन्दर खेत दिख रहा है खेत बहुत ही बढ़िया लग रहा है खेत के अंदर हम को पेड़ दिख रहा है जो की बड़े बड़े हरे भरे दिख रहे है जो बहुत सुन्दर लग रहे है।